ये एक चर्च के बाहर की पिक है जिस में चर्च के चारों तरफ जालियां लगी हुई है।

यहाँ पर घास भी में सूखी हुई है दूर बिजली के खंभे भी दिख रहे हैं।

चारों तरफ बिजली के तार फैले हुए हैं और यहां पर बीच सड़क पर एक बाइक खड़ी हैं और कुछ लोग आ जा रहे हैं।

ये एक बाँध का पिक हैं जहा पर थोड़ा सा पानी हैं कुछ सूख गया है और हरा ग्रास भी है।

किसी कारखाने का पिक लग रहा है ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है जिसपे जो लोहे के ऐंगल पर टिका हुआ है।

ये एक ब्लैक एन्ड वाइट पिक है जँहा पर इंटो के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है।

और साइड में कई पंख लगे हुए है और यहाँ पर सोफे पड़े हुए है टेबल्स पड़ी हुई है और साइड में दीवार पर पेंटिंग बनी हुई है।

यह रेस्टोरेंट पर टेबल्स पड़ी हुई है और यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर की चेयर्स पड़ी हुई है और साइड में फोटोस लगे हुए हैं ।